और पीछे बैठने के लिए भी है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी है और पानी के लिए जग भी --

ये किसी सड़क की फोटो है जहाँ तीन बेर्रियर्स लगे है।

सामने एक ऑटो है राइट साइड पर दो बाइक्स हैं और एक बाइक आगे से जा रही है।

कुल के सामने छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं और राइट साइड पर एक काफी बड़ा पौधा है।

पंखें और लाइट्स भी है डिफरेंट पैकेज में --

रूम्स में दो बैठने के लिए चेयर है जिसके ऊपर बैग्स रखी गई है।

पानी भी बहोत है और आसमान में बादल भी बहोत सारे हैं।

आसमान काफी खुला है और हल्की सी धूप आ रही है।

जहां दो गाड़ियां है एक स्कूटी और एक बाइक राइट साइड पर एक का भी है जहां --

तस्वीर को देख के लग रहा है जैसे ये कोई जंगल की पिक्चर है।

राइट साइड मे एक टीन का रूम भी है।

साथ ही में बुक्स भी रखी हैं टेबल पर।

ये किसी दुकान की पिक्चर है जिसमें कई सारे पैकेट्स लटके हुए हैं।

और अंदर काफी सारी खान की चीजे भी रखी हुई है।

और बेकरी का नाम है अग्नि बेकरीज बेकरीज के सामने दो स्कूटी और दो बाइक भी है।

बेकरी के अंदर दो बच्चे भी हैं।

देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यह कई साल पुरानी गुफा है।

ये किसी रेस्टोरेंट का टेबल है जहां सामने दो पिक्चर है।

अह कुर्सियों का रंग ब्लू और नीला है।

और ऊपर सफेद और काले रंग के गुब्बारे भी है।